यहाँ पे काम हो रहा है जो एक दो तीन चार पांच छह --

ये एक मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट्स की दुकान है क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल है जो कोस्को की कम्पनी की रखी गई है और बेडमिंटन है।